और एक कार खड़ा है जो ब्लैक कलर का है।

और कढ़ाई के ऊपर चार कोने का स्टील का बर्तन है।

और एक लड़का खड़ा है जो मास्क लगाया हुआ है और चश्मा पहना हुआ हैं।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा पहाड़ दिखा रहा है जो ब्लैक एंड वाइट कलर का है और बहुत सारे पेड़ - पौधे है जो ग्रीन कलर के --

और उसके वाच है और उसके पीछे कारपेट है जो रेड और येलो --

इस इमेज में मुझे एक झूला दिख रहा है जो रेड कलर का है उसमें कुछ लाइनिंग बनी हुई हैं जो येलो कलर की हैं मिट्टी कलर की है ग्रीन कलर की है।

इस इमेज में मुझे एक हांथी का स्टेचू दिख रहा है जो ग्रे कलर का है और उसका दांत वाइट कलर का है और नाक --

पेड़-पौधे है जो ग्रीन कलर के है।

और दो बोर्ड यहाँ पर खड़ी है जो एक मिटटी कलर का है और दूसरा ब्लू कलर का है वाइट कलर का है और ब्लैक कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक तेर्तेर फिखै दे रह है जिसका छटा रेड कलर का है.

और कुछ पेड़-पौधे दिख रहे है जो ग्रीन कलर के है और एक बैनर है जिसमे कुछ लिखा हुआ है।

और कुछ पोले गड़ी हुई है जो वाइट कलर के है और फर्श ग्रीन कलर का है।

और रक हैयरबैंड है जो ब्लैक कलर का है और एक छोटा सा तालाब है जो ग्रे कलर का है।

और कुछ पत्तियां दिख रही है जो ग्रीन कलर की है और कुछ तारें दिख रही है जो ब्लैक कलर के है।